और ये बस यात्री को ले जाने के लिए है बस में बहोत सारे आदमी--

बहोत सुंदर जगह है जहां पे हड़े हडे घास है यहां पे दो आदमी है एक आदमी ने बैंग बैग लिया है।

यह इस बहोत सारे फल बहोत अच्छे-अच्छे फल है पपीता भी है तरबूज भी है बहोत ही अच्छे फल है बहोत ताजे फल है।

बहोत घना भी है पीछे लाल कलर का मंदिर है जो दिख नहीं रहा क्या चीज का मंदिर है बहोत अच्छा मंदिर है।

ये न्यू न्यू दुकान है बहोत अच्छा है इसका काउंटर ई अ ऑरेंज कलर का है।

यहां पे दो पेट्रोल पंप है दोनों बहुत अच्छे हैं और उसके पीछे कार लगी हुई है।

ये एक इस इस्कूल के बच्चे हैं इस्कूल का नाम डी_ए_वी है ये एक चारों लड़कियों ने मिलके एक अच्छा सा ड्रॉइंग बनाया है।

ऑरेंज बैलून ग्रीन बैलून है वाइट बैलून है ये बोहोत ज्यादे बैलून में है ये बहुत अच्छे है खूबसूर --

पाड़ो ने जैकेट पैन रखी है यहाँ पर बहुत ठंडा है चारों ने अपने कान में टोपी लगा के रखी हुई है।

पिक्चर डेयरी मिल्क के फाइव स्टार से बहुत अच्छे अच्छे खाने वाले चीज सब है।

इंटर बाइक लगी हुई है उसमें एक लड़का है पीछे एक कैफे है।